ये भगवान है। भगवान कि हम लोग पूजा करते हैं। यह गौतम बुद्ध हैं गौतम बुद्ध जो हम लोगो को बहुत सारे सीख दी है और यह हमलोग के लिए बहुत सारे कुछ किए हैं और इसके हम लोग पूजा करते हैं। यह हिन्दू धर्म के लोग उनके पूजा करते है और हिन्दू धर्म इनको बहुत जा --